यहां पर गमले भी बहुत सारे बेचने के लिए बाहर लगे हुए हैं।

पार्क में बहुत सारे लोग योगा करने के लिए आए--

पेट्रोल पंप में छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यह तस्वीर एक बस स्टैंड की है।

बिरया के कनयारे पर अलग अलग तरह के पेड़ और छोटे छोटे पोधै लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर बहुत सारी लेडिस और जेंट्स खड़े हुएं दिखाई दे रहें हैं।

पीछे बहौत सारे पेड़ लगे हुए--

घर को लाइटों से बहोत सुंदर ढंग से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मोटरसाइकल के पास तीन आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस घर में पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमे एक बहोत बड़ी दिखाई दे र--

यह तस्वीर एक मैरिज पैलेस की है मैरिज पैलेस को बहुत ही सुंदर ढंग से फूलों से सजाया गया है।

मैरिज पैलेस के आस पास हरी हरी घास बनी हुई है।

एक्टिवा के पास तीन गिफ्ट बॉक्सेस पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस कमरे में एक एल शेप सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा--